इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है और येलो कलर का है और ऑरेंज कलर का है और ग्रीन कलर का है।

इस इमेज में कुछ एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है जो धुंधला दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के है।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

इस इमेज में मुझे बहुत सारे मुर्गे दिखाई दे रहे है जो वाइट कलर के है और मिट्टी कलर के है और ब्लैक कलर के है।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

कार का फोटो बना हुआ है और एक शटर दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है और ग्रे कलर का है।

इसमें एक खिड़की दिखाई दे रही है और एक गेट दिखाई दे रहा है और कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जो व्हाईट कलर की हैं और ब्लैक कलर की हैं।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

और कुछ चेयरें दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर की है और मिट्टी कलर की है और येलो कलर की है और रेड कलर की है।

और कुछ चार्जर दिखाई दे रहे हैं जो व्हाईट कलर के हैं और कुछ कुर्सियाँ ही दिखाई दे रही हैं जो ब्लैक कलर की हैं।

इसी में जो मुझे एक बड़ा सा रुम दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है।

इस इमेज मुझे एक बड़ा सा टावर दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है और व्हाइट कलर का है।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

इस इमेज मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं।

जिसमें बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं इसमें से बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।

और हल्का यलो कलर का है और मिट्टी कलर का है जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं जिसमें एक कांच लगा हुआ है।